और शीशा लगाया हुआ है ।

और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे दिख रहे है उसपे चढ़ने का इंतजार कर रहे है और वहाँ जाने-आने का ।

और पुराने-पुराने इस अह लोहे के गेट लगे हुए हैं और --

बिल्डिंग भी पोटइयाँ बहुत दिन से नहीं हुआ है।

इसके ऊपर से उ ऊपर चहड़ने के लिए सीढ़ी भी --

इसमें बहुत सारा पेड़ है जंगल भी हो सकता है बहुत सारा पेड़ है जो हरा भरा है इसमें नहीं जंगल का नही यह जू का ही है।

प्रणाम उसके के गेट में पता नहीं इसमें वह मिक्की माउस लगाया हुआ है।